यू_पी भी टाइपिंग कर रहा है।

माशिन पूल के नीचे खड़ी है पूल के नीचे एक ट्रक भी है ट्रक लाल रंग का है।

साइड में बैलून है ये सफेद और नीली है।